यह एक मैरिज हॉल है। यह मैरिज हॉल में डेली यहाँ पर शादी होते है। यहाँ पर एक मूर्ति है। यहाँ पर बहुत ही सारे आदमी खड़े हुए है।

यह एक कोचिंग है यह कोचिंग में बहुत ही सारे लड़के को पढ़ाया जाता है ।

और एक जेन्स भी है और एक यहाँ पर लड़के भी है पीछे में बाल्टीन में रक्खा हुआ है।

यह एक पार्क है। यह पार्क में बोहत ही सारे बच्चो को खेलने जैसा भी समान दिया गया है बोहत ही अच्छे-अच्छे भी खिलौने भी यहाँ पर हैं।

यह येक बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर बहुत ही सारे मंदिर है यहाँ पर तीन मूर्तियाँ भी रखे हुए हैं।